उगता हुआ सूरज दिखाया गया है। इसमें एक नारियल का दो पेड़ है और इसके बीच में तालाब जिसकी नदी जिसमे बहुत सारा पानी है और इस पानी में बहुत सारी मछली रहते हैं और बहुत सारे जीव जंतु --

और यह दिखने में काफी सुंदर और बड़ा है। इस सुदीप मिष्ठान भंडार में बहोत ही अच्छा-अच्छा समोसा ब्रेड वगैरा रसगुल्ला वगैरा मिलता है।

यह एक हमें बहोत ही अच्छा और बहोत ही सुन्दर सा एक जगह दिखाया गया है।

और इसके में बहोत दूर- दूर से लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ माँ काली का मंदिर है।

यहाँ बाल कटवाना और बहुत ही कम दामों में इसीलिए लोग यहाँ आते हैं दूर - दूर से बाल कटवाने दाढ़ी बनाने और बहुत सारी चीज़ क --